सामने एक दुकान है जो दो मंजिला है।

सामने एक व्यक्ति बैठा है।

सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है मंदिर का रंग सफ़ेद है।

सामने छोटे-छोटे बहुत से गमले रखे हैं।

यहाँ एक बहुत बड़ा शोरूम है।

हिंदी में भी लिखा हुआ है बिहार नर्सिंग होम ।

सामने एक लड़का खड़ा उसके पास एक लाल रंग का बैग टंगा है।

जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसके हाथ में मोबाइल है वहां --

सभी एक जैसी पोजीशन में खड़े है।

तामने एक ट्रक है।

अअं अ कुछ व्यक्ति के हाँत में बच्चे --

उसके निचे एक घडी रखि हे।

अं इस दुकान का रंग काला है।

तभी आकृतियां अलग अलग हैं।

अंदर व्यक्ति एक बात कर रहा है।

खिड़की के अंदर एक टेबल है।

उस सर्कस के में एक व्यक्ति बैठा है।

जिसने नाल रंग का टी-शर्ट और हाफ पैन्ट पहन रखा है पीले रंग का।

यहाँ एक एक्सरसाइज मशीन है।

सामने एक पेड़ दिख रहा है।

इसके चारो साइड डार्क ब्राउन कलर का रंग करा हुआ है।